ये एक होटल का चित्र है इसमें एक बोर्ड लगा हुआ है उसमें लिखा है सरवाना होटल ।

जॉन्सकोन है स्कांडिर गार्डन लिखा हुआ है और ये--

यहां के आसपास बहोत सारे पेड़ हैं बहोत सुंदर लग रहे--

व् व्हाइट कलर का हैं लगता है ये एक मॉल है बहोत सुंदर बहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं यहां पर।

यहां एक लड़की बैठी हुई है।

यहां बहुत सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं।

संतरे है सेब है बहोत सारे फ्रूट्स है लगता है ये फ्रूट बाजार--

लगता है ये बहोत बड़ा दुकान है कोई मेडिसिन का दुकान लग रहा है।

यहां एक बहोत बड़ा सुंदर सा गेट लगा हुआ है गेट के ऊपर एक सरस्वती मूर्ति है।

कांच का दरवाजा है लगता है यहां ओप्पो लिखा हुआ है मोबाइल का दुकान है।

उसके पास समुन्दर दिख रहा है और आसपास बहोत सारे लोग हैं जहां यहां बैठ के समुदर के पार जाते हैं।

ये तो दो मेहल का बिल्डिंग हैं नीचे में दुकान बहोत सारा दुकान गया हैं।

यहां पे पेन है पेपर है बहुत सारे बुक है बहुत सारे स्टोर बुक है।

उसके सामाने वो एक व्हाइट कलर का कुर्ता पहने खड़ा है।

यहां एक पार्क है। पार्क में बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है ये छोटे-छोटे शो--

और इसमें लगता है ये एक रेस्टोरेंट है जहां लोग खाना खाने आते हैं।

और यहां एक ए_सी लगा है और बहोत सारे चिआर पड़े हुए हैं जैसे कि क्लासरूम में होते हैं।

यहां बहोत सारे लोग देखने के लिए आए हैं यहां क्रिकेट मैच हो रहा है खिलाड़ी खेल रहे हैं अ लोग--

मॉल मे सेल लगा हुआ है जिसमे लिखा है बाय वन गेट वन फ्री --

ये एक मंदिर जैसा दिख रहा है यहां बहुत सारे सीढ़ियां हैं।

यहां बहोत सारे लोग जमा हुआ है।

सब यहां पानी पीने आए हुए हैं।

सामने एक टी_वी रखी हुई है।

उसके अंदर बहोत सारे मेडिसिन भरे पड़े हैं यहां लोग खरीदने आते हैं।

जहां बहोत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं।

खाना खा रहे हैं और आधा उन में परोस रहे हैं खाना दे रहे हैं लोग यह यह लगता है दावत है।

साईं राम ऑटोमोबाइल का जैन्युन स्पेयर एंड सर्विस गोविंतला संबलपुर लिखा--